ये एक गैराज का फोटो है जहाँ पर गाड़ी ठीक होने आई है।

और इसके बैक साइड के शीशे और बंपर निकला हुआ है।

और ये गाड़ी ठीक हो रही है। यहां पर एक आदमी --

ये एक बिल्डिंग का फोटो है जहां पर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है और जो बराबर में बिल्डिंग है वो बन चुकी है।

ये एक गैराज का फोटू है जहां पर गाड़ियां धुलती है।

और इसमें काफी हरे-भरे पेड़ हो रहे हैं और ये बोहत बड़ा है।

ये एक सब्जी की दुकान है। यहाँ पर काफी सारा अ सब्जी का सामान मिलता है और जो कि खाने में इस्तेमाल होता है और इस फ़ोटो में एक लड़का भी दिख रहा है।

है और इसके नीचे ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है और पंखे भी लगे हुए हैं।